ये घर है ये इतना अच्छा है और इसका अच्छा होने का कारण हमे पता नहीं है।

और जी जिसको भी अपने घर में ग्रिल लगानी होगी तो मुझे बुला लेना मैं फ्री में लगा लेता हूँ।